इस इमेज में एक ग्राउंड रास्ता बन दिख रहा है| रास्ते के राइट साइड में कुछ पेड़ और खंबा लगा दिख रहा है बिजली के उसके राइट साइड एक बड़ा सा भवन भी दिख रहा है जो की पिंक और वाइट कलर का है।

इस इमेज में एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही इस क् दिख रही है जिसका नाम काव्या कंपलेक्स है जिसमें एक ग्रीन कलर के और ब्लैक कलर के कांच लगे हुए हैं। उसके सामने बहोत सारी बाइके और साइकिले खड़ी हुई दिख रहीं हैं। इसके राइट साइड में एक रेड कलर का जनरेटर भी दिख रहा है।

लेफ्ट साइड में एक मे भी पेड़ है इसके राइट साइड में एक इंसान बैठा हुआ है और बीच में बहोत सारा पानी भरा हुआ --

इस इमेज में एक दुकान दिखाई दे रहा है। जिसका नाम है लक्षी इलेक्ट्रिकल एंड सन्नाश है।

जोकि चल रहा है। इस म् में एक इंसान भी दिख रहा है।

इसके राइट साइड में एक इंसान खड़ा हुआ है जो बच्चों को पढ़ रहा है। बोर्ड के ऊपर ब्लैक कलर में एक जंगला दिखाई दे रहा है। बोर्ड के साथ में एक कैलेंडर भी लगा हुआ दिख रहा है।

इसके अंदर एक बाइक खड़ी हुई है जो कि जो कि धूल रही है। उसके राइट साइड में एक खिड़की दिख रही है जो कि ब्राउन कलर की है।

इस इमेज में एक बड़ा बोर्ड दिख रहा है जिसके ऊपर वाइट कलर का होटल मनो कोमल एंड रेस्टुरेंट करके लिखा हुआ है ।

ड्राई क्लीनिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में करके लिखा है। सामने एक वाइट कलर का शोकैस दिख रहा है अंदर बोहोत सारे कपड़े रखे हुए दिख रहे हैं और उनका मोबाइल नंबर भी दिख रहा है।

इमेज में लेफ्ट साइड में रेड कलर का बैग टंगा हुआ दिखाई पड़ रहा है। राइट साइड में एक ठेला हैं जिसके अंदर बहुत सारे सेब रखे हुए दिख रहे है। उसको एक लोग ठेका के लेके जा रहा है।

इमेज में एक रास्ते का फोटो दिखाई दे रहा है जिसके लेफ्ट साइड में बहुत सारे बिल्डिंग बनी हुई है लाइन से और राइट साइड में पेड़ लगे हुए हैं और एक ग्राउंड है ल लेफ्ट साइड में बिजली के खम्बे भी लगे हुए दिख रहे हैं राइट साइड में --